और इसमें जो है ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और इसके घड़े में हाथ में एक घड़ी है और --

ये तस्वीर एक खेत की है और इस खेत में जो है एक फसल लगी हुई है।

और ये प्रतिमा जो है बहुत बड़ी है। ये एक ऊंची जगह पर स्थापित है।

जिसमें मीटिंग रूम में एक अधिकारी एक कर्मचारी जो है रजिस्टर्स को पूरा कर रहे हैं।

और जो है दूर-दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है बल्कि मंदिर का सा कुछ --

ये रोड के ऊपर एक गेट बना हुआ है। गेट के ऊपर वाली मंजिल में एक लाइब्रेरी बनी हुई है। जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम दिया गया है।

इसमें अ लोग जा करके अपनी स्टडी करते हैं। जो कि बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके ऊपर एक घंटा बना हुआ है जो दोनों ओर से आने वाली --

और ये प्लास्टिक की साइकिलें भी मौजूद है । इसमें बड़ी-बड़ी रेंजर की साइकिल भी मौजूद है ।

और इसमें काफी सारी साइकिले मौजूद है । साइकिल की दुकान जो है। बहुत ज्यादा अच्छी --

और ये भागता बहुत तेज है इसकी पतली टंगे इसके भागने में काफी मदद --

ये जहाज जो है रस्सी से बंधा हुआ है और सूरज जो है बोहोत ही तेजी पे है और पानी सूरज की --